एक दीवार क्रीम कलर की है।

बहोत सारे पौधे है हरे रंग के पीले रंग के फूल हैं।

सफेद रंग की छत है सफेद रंग की दीवार है दीवार पर पीला बॉर्डर बना--